अगरबत्ती लगा हुआ है मोमबत्ती जल रही हैं ।

दीवार दिख रही है ग्रे कलर की और वाइट कलर की लाइट् बहुत सारी लगी हुई है वाइट कलर के--

अंदर गुफा बना हुआ है अ पिंक कलर का ग्रीन कलर का ब्लू कलर का --

ऊपर अ खंभे बनी हुई है रैलिंग लगा है ऑरेंज कलर का दिख रहा हैं।

बहोत सारे काउंटर बने हुए है जिसमे बहुत सारा पेंटिंग्स रखे हुए सामान रखे हुए हैं ।

कुर्ता पैजामा पहना हुआ है वो वाइट कलर का और पगड़ी भी लगाया हुआ दिख रहा हैं। _

बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे है रैलिंग दिख रही है ट्रैन दिख रही है ब्लू कलर का--

खंभे दिख रहे है गुलदस्ता दिख रहा है बोर्ड टंगा हुआ है ऊपर जिस पे लिखा है जे.बी.ऍम. पुश --